--और ऊपर फूल वाले पेड़ भी लगे हुए हैं। ऑरेंज कलर के गुलाब फूल लगे हुए हैं। सामने घर बने हुए हैं और ऊपर पहाड़ है।

ब्लू कलर का शेड है यँहा पर बहोत सारी कुर्सियाँ रखी है यँहा पर हरे कलर की जाली है यहाँ पर एक बोटल लेके एक जैंट् जा रहा है।

चित्र है चित्र के अंदर पेड़ फूल लगे हुए है और यहाँ पर शेड डाले हुए है।